कैफे के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

और एक आदमी माइक लेकर बैठा हुआ है और बहुत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं और नीले कलर के पर्दे भी लगे हुए हैं।

इस चित्र में हमें एक जिम दिखाया गया है।

और एक पीले कलर की मशीन भी रखी हुई है।

इस चित्र में हमें बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है।

बैनर पर शहीद त्रिवेणी चंद्रशेखर आजाद लिखा हुआ है।

चित्र में हमें शेरों वाली माता की झांकी दिखाई गई है।

आगे बस ऑटो टेंपू खड़ी हुई है और एक आदमी झोला लेकर चल रहा है।

रोड के ऊपर बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है।

और इसका काले पंख हैं और बड़े बड़े पंजे भी हैं।

लॉन की बिल्डिंग पर बहुत सारी छोटी छोटी लाइट डाली गई है और एक पानी का फवारा भी बना हुआ है।

रोड के साइड में दुकानें बनी हुई हैं और एक पेंट की दुकान भी है और एक बिजली का मीटर भी लगा हुआ है।

और हमें एक मरकरी लाइट का खंभा भी दिख रहा है।

टमाटर बैंगन लौकी गोभी और सिलेंडर भी रखे हुए है रोड पर एक आदमी चल रहा है।

और लोग बाजा बजा रहे हैं। सभी लोग धोती पहन रखे हुए हैं और फूलों से यात्रा की रथ सजाई गई है।

चित्र में हमें एक पिज़्ज़ा की दुकान दिखाई गई है।

और टमाटर के पेड़ों से कुछ उठा रहे हैं।

इस दुकान में रैक में बहुत सारे नमकीन और बिस्किट रखे हुए हैं।